जो हम गिफ्ट करते हैं किसी को --

पर इसका सफ़ेद कलर का बोर्ड लगा हुआ है।

में बहुत सारी गाड़ियां दिखाई दे रही है |

और इसमें हरे नकली पेड़-पौधे लगे हुए हैं इसमें दो लड़के खड़े हुए हैं एक लड़का बैठा हुआ है।

एक चैनल गेट दिखाई दे रहा है जो लोहे किंग आलो का बना हुआ है और काले कलर का दिख रहा है।